बन रही है यहां पर एक पोस्टर भी लगा हुआ है यहां पे।

यह एक समारोह की तस्वीर है यहां पे बहुत सारे फूलों से और रंग बिरंगी लाइटों से इसे सजाया गया है।

सा सामने स्टेज पर एक आदमी लेडिस बैठी हुई हैं नीचे बहुत सारे आदमी और लेडिस बैठी हुए हैं कुर्सियों पर।

सामने एक एल_ई_डी लगाई गई है और यहां पे घड़ी भी रखी हुई है तीन कलर का पेंट किया गया--

यहां पे पेड़ पौधे भी उग रहे यहां पे लाइटें भी लगी हुई है।

डब्बे रखे है यहा पे बहोत सारे लाइटे भी रखी लगाई--

बैठ कर फोटो खिंचवा रहे हैं आदमी ने एक वाइट कलर की टोपी पहनी हुई यहां पे बहुत सारे पत्थर--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

और लोहे का दरवाजा लगा है यहां पे दो आदमी--

पंखे लगाए गए हैं बहोत सारी लाइटें भी लगाई गई है।

यहां पे बहोत सारे सीन रखी हुई है दीवार पर लगाई भी गई है।

यहां पे एक बोर्ड लगा है जिस पर राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिषद सैलानी झज्जर है यहां पे बहोत सारी --

टी शर्ट और लोवर पहना हुआ हैं और वाइट कलर --

यहां पे सीढ़ियों पर बहोत सारे प्लांट भी लगाए गए हैं और यहां पे--

यह क्लासरूम है जहां पे सिलाई सिखाई जाती हैं।

यहां पर बहोत सारी सिलाई मशीन रखी हुई है यहां पे बहोत सारे खिड़कियां भी लगी हुई है।

दिखाई दे रहा है और यहां पे बहोत सारे पेड़ पौधे भी--

यह एक योगा क्लास यहाँ पे बहोत सारे बच्चे--

योगा कर रहे है और नीचे मै बिछा रखा है।

यें एक मैदान की तस्वीर यहां पे हरि-हरि घासे उग रही है यहां पे स्विमिंग पुल भी बना जीसमें बहोत पानी है।

कपड़े लटके हुए हैं यहां पे वाशिंग मशीन भी रखी हुई है यहां पे मेज पर--